यहाँ दुकाने भी बनाई गईं हैं। काफ़ी सारे व्यक्ति भी थड़े हुए हैं। मोटरसाइकिल साइकिल भी थडी हुई है और दुकाने हैं आंगे सामने।

हेलो गाइस ये एक बंदा जिम कर रहा है जिम फाइटिंग में। भीतर इसमें जिम क --

बहुत अच्छा नजराना है आ रहा है एक ऑटो खड़ा हुआ है टेम्पो और सामने नजराना आ रहा है एयरटेल की दुकान दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी सारे ठेल ठाढ़ी हुई हैं पेड़े बादल सा हो रहा है।

हेलो गाइस ये कुछ इंजीनियर हैं जो अपना-अपना काम करा रहें हैं ये। अच्छा ही नजराना आ रहा है मुझे ये। अपना-अपना काम करा रहे हैं कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है।

हेलो गाइस ये एक परलौर है यहाँ पर परलौर के आगे तीन व्यक्ति दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर एक दुकान सी बनी हुई --

हलो गाइस ये कुछ व्यक्ति हैं। मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर मेहनत कर रहे जे कुछ व्यक्ति कुछ माल तोल रहे है कांटे पर।